यह एक चौराहे की तस्वीर है। घंटा घर टाइप का कुछ है। ऊपर घड़ी लगी हुई है। नन्दी जी का साईन है। शिवजी का त्रिशूल वगैरह है।

और उ टाइल्स वगैरा अच्छा हैं यहाँ की सर्विस भी अच्छी है।